पैरों में सफेद रंग के जूते और लाल रंग का घाघरा पहनी हुई है।

गेट के बाहर लगे बोर्ड पर डिज्नी वंडर वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट लिखा हुआ है।

पार्क के बाहर एक आदमी खड़ा है।

आदमी एक नीले रंग की टी शर्ट और जींस भी पहना हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर व सामने ईसाई धर्म का क्रॉस लगा हुआ हैं।

जिसे रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।

बिल्डिंग के सामने कुछ बाईकें खड़ी है।

एक हरे रंग की बहू मंजिला इमारत दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर कैडबरी और किटकैट की चॉकलेट्स रखी हुई हैं।

पार्क में चलने के लिए एक पथरीला रास्ता भी बना हुआ है।

बड़े गेट और कुछ खिड़कियां भी बनी हुई है।

सड़क के सामने तीन मंजिला हल्के पीले रंग की बिल्डिंग बनी हुई है।

पेड़ के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पेड़ लगे हैं।

सड़क पर हरे रंग के ऑटो रिक्शा दिख रहे हैं।

एक बेड है जिसके ऊपर एक भूरे रंग का टेडी बियर रखा हुआ है।

छतों और दीवारों पर नीले और सफेद रंग के गुब्बारे लगे हैं।

पास ही में हाउसफुल का बोर्ड भी लगा हुआ हैं।

जिम में बड़ी संख्या में एक्सरसाइज की मशीनें भी दिख रही हैं।

और छत पर लाइटें भी लगी हुई हैं।

इन पिलर्स के पीछे एक टीन शेड भवन बना हुआ है।

ये विद्यालय की जैसी दो मंजिला इमारत है।

यह अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें।

यहां पर बड़ी संख्या में राखियां दिख रही हैं।

और साथ ही बहुत सी राखियां रस्सी में बांधकर टंगी हुई भी हैं।

पेट्रोल पंप पर एक हरे रंग का ऑटो रिक्शा व कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।

इस पेट्रोल पंप के पीछे एक मोबाइल नेटवर्क टावर लगा है।

यहां पर एक्सपी नाइंटीफाइव सी_एन_जी पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन मौजूद है।

मेट्रो स्टेशन के ऊपर लाल रंग से आलमबाग बस स्टैंड लिखा हुआ है।

यू_पी पैंसठ बी बी तिहत्तर तिरानबे लिखा हुआ है।

यह लोग अपने सांस्कृतिक कपड़े पहने हुए हैं।

ये लोग ढोलक जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते भी नजर आ रहे हैं।

बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

में दो हॉस्पिटल के कर्मचारी खड़े हुए हैं।

यहां पर निर्माण कार्य में शामिल कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

दो लोगों ने सफेद रंग का हेलमेट और बाकियों ने पीले रंग का हेलमेट भी पहना हुआ है।

भारतीय पुरुषों के सांस्कृतिक परिधान दिखाई दे रहे हैं।

परिधानों में हल्के नीले रंग की शेरवानी हल्के भूरे रंग की शेरवानी और एक सदरी शामिल है।

बच्चों के पीछे काले रंग की लोहे की जाली लगी हुई है।

दुकान के अंदर बड़ी संख्या में साड़ियां नजर आ रही है।

पास ही में एक भूरे रंग की कुर्सी भी रखी हुई है।

वॉटर स्प्रे की बॉटल रखी हुई है।